यहां पर एक सोफा रखा हुआ है एक लाइट लग रही है।

यहां पर एक लड़की डांस कर रही है।

साइड में एक कुर्सी भी बिछी हुई है।

नीले कलर का पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत बड़ा पहाड़ है इसके बीच में बहुत बड़े बड़े पत्थर भी रखते हुए हैं।

यहां पर एक डाइनिंग टेबल पर कुछ प्लेट लगी हुई हैं।

इसके ऊपर कुछ स्किन भी लगी हुई है।

यहां पर एक टेंट लगा हुआ है।

और यहां पर बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं।

एक और मशीन रखी हुई है यहां पर।

एक फ्रिज रखा हुआ है उसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है।

यह एक बहोत बड़ी दुकान है इसमें बहोत सारी साइकिलें है खड़ी हुई हैं।

सीन पे हरा और पीला रंग हो रहा है और इस पे बोहोत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

यहां पर एक टेबल रखी हुई है उस पर एक लड़की की पेंटिंग बन रही है।

और यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और बहुत दूर एक पूल भी जा रहा है।